ये किसी मॉल बने हुए हैं लाल और सफेद कलर का गुब्बारा है।

यह एक चर्च जैसा दिख रहा है आधी दीवाल व्हाइट कलर की है आधी दीवाल स नीली कलर की है।

और एक आदमी खड़ा है जिसने पिंक कलर की शर्ट पहनी हुई है कुछ औरते है।

और कुछ बच्चे हैं औरतों ने गजरे लगाए हुए हैं।

बहोत सारे विंडोज दिखाई दे रहे हैं और पिंक कलर का पेंट मारा हुआ है।

गाड़ी दिखाई दे रही है सूखी लकडियां दिखाई दे रही हैं।

एक आदमी पीछे उधर फोटो ले रहा है।

यह एक बैंक जैसा दिख रहा है।

दो पिलर दिख रहे हैं और दीवाल है।

और एक बोर्ड दिख रहा है उसमें कुछ लिखा हुआ है एक कार दिख रही है।

यहां छत दिखाई दे रही है जिसमें सोलर का काम चालू है।

नीचे बहोत सारी बिल्डिंग है पेड़ पौधे है।

ये एक कार धोने की दुकान जैसी दिख रही है।

और फर्श इन फर्श पर पानी लगा हुआ है दीवाल थोड़ी पुरानी जैसी हो गई है जिसमे हरी कलर की काई जैसी लग गई है।

यह एक बुक स्टोर है जिसमें एक आदमी खड़ा है और --

और एक बॉक्स बना हुआ है और पीछे ये मंदिर दिख रहा है।

और हरे कलर की बुक दिख रही है लाल कलर की बुक दिख रही है और पेन दिख रहा --

पर्दा है रेड कलर का वाइट कलर का और लाइटिंग्स दिख रही है।

एक शादी का माहौल दिख रहा है और --

यह इक दुकान दिख रही है दुकान में ढेर सारे सामान है।

यह एक गार्डन जैसा दिख रहा है एक आदमी खड़ा है।

और हल्दी का पेड़ लगा हुआ है कुछ ईंटें लगी हुई हैं।

और पीछे मोटा पेड़ दिखाई दे रहा है ऊपर आसमान दिखाई दे रहा है।

और पीली कलर की बिल्डिंग दिख रही है और उसमें ए_सी के ओ लगे हुए हैं।

और झाड़ दिख रहा है पीछे एक और बिल्डिंग दिख रही है।

और सफेद कलर भी है एक बड़ा सा बोर्ड लगा हुआ है नारियल का झाड़ दिखाई दे रहा है।

और नीचे पानी गिरा हुआ है कुछ लकड़ियां नीचे गिरी हुई हैं।

यह एक ट्रक की शॉप दिख रही है और कांच लगा हुआ है।

और लाइटिंग की कुछ दिख रहा है और दिवाले दिख रही है एक दूर से विंडो दिख रहा है नीला आसमान दिख रहा है और एक आदमी कांच में से दिख रहा है।

और बहोत से सुंदर सुंदर पेड़ लगाए गए है एक आदमी खड़ा है एक शोपीस का पेड़ है ब --

दीवाल दिखाई दे रहा है जिसमें पीला कलर का पेंट मारा हुआ है।

गेट है जिसमें तीन बैनर लगे हैं दो लालटेन दिख रहे हैं और एक --